इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कुछ मजदूर बड़ी सी टाइल्स को एक दो पहिये की टायर वाली गाड़ी पर रख कर ले जा रहे हैं यह--

जहाँ एक जंगल का फोटो नजर आ रहा है जिसमें काफी बड़ा पत्थर अम का बिलड़ा बना हुआ नजर आ रहा है उस पत्थर पर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई नजर आ रही हैं।

उसमे एक मैकेनिक काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है और एक आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा है जिसने लूंगी बांधी हुई हे ।

एक लड़का अपने मोबाइल से फोटो लेता हुआ नज़र आ रहा है।